ये झरना किसी --

इस व्यक्ति ने टीररी अपना व्यापार चालू करने के लिए ली है।

इन में बहोत पेंशन है।

ये डेकोरेशन बहोत अच्छी है।

ये एक है। यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं।

यहाँ पर कुछ प्रोग्राम निकल रहा है।

ये प्रोग्राम बहुत सारे लोज मिल जन रल रहे हैं।

मुझसे अलग भी हो सकता है।

ये एक रेस्टॉरेंट का

ये शट्टर के ऊपर लाइटे लगायी गयी हैं।

यहाँ पे शायद सभी जगह या सभी स्थानों के लिए टेम्पो मिलते हैं।

यह खाली फिल्ड है।

ये सा भी हो सकता है।

यहाँ पर रानीपाल से आती है।

ये गाड़ी किसी व्यक्ति की हो सकती है।

ये बैंक ऑफ़ बड़ोदा है।

ये टीचर इन बच्चों के लिए पढ़ा रही हैं।

ये दो टीचर इन बच्चों के लिए ड्राइंग बनाना सिखा रही हैं।